यार ये मतलब कि सड़क कित्ती बढ़िया है आप यार यहाँ पे तो यार कुछ भी खाने पीने का सामान ले लो और कहीं के लिए भी गाड़ी पकड़ लो यहाँ से कुछ भी --

ये घर कितना मस्त है यार और यहाँ पे यार कार वार करने की यार पार्किंग कितनी बढ़िया है न और अन्दर ये यार कितना बड़ा घर है यार ये।

भूखे हैं तो इस मारे घास वगैरह चरते हैं ये कितने बढ़िया नजारा यहां का।

और यहाँ लोग बाग आते होंगे कितनी भीड़ रहती है यार यहाँ पे।

और यहाँ बहुत-बहुत दूर के लोग आते हैं और क्या कहते हैं पच्चीस सितंबर को तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है।

और यहाँ ये साफ सफाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छे से सजाएंगे इस मंदिर को और भी खूब --

पुराने तिजोरी है यार महाराजाओं के समय की तिजोरी है ये।

और इसके आगे कितना स्पेस है और ये बराबर में हरी-हरी पेड़-पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं इसके।

क्या बताऊं कितना बढ़िया खाना देते हैं ये लोग --

और इस होटल में कितनी अच्छी स्टेज बना ली है जयमाला की।

ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है।